नोरमी से मुरम से बना हुआ यह रोड है। आस-पास जो है काफी पेड़-पौधे लगे हुए है।

यहा पे कुछ बड़े बड़े छोटे बड़े पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं जो बहोत ही खूबसूरत लग रहे हैं।

और फुल कलरफुल ये एक छोटा सा पॉट है पांच टाइप के हैं और यहां कोने में रखे गए हैं।

कुछ इंस्ट्रूमेंट यहां ऐसी ही पड़े हुए है कुछ बॉल वगैरह हमें दिखाई पड़ रहा है ग्रीन कलर का एक आदमी यहां पे कुछ अ अपने हाथों से मैट पे कुछ बना रहा है।

दूल्हे की पगड़ी जो रखी हुई है संभाल करके और बहोत खूबसूरत इनका एसेसरीज भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है टेबल पे --

यह एक भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है यहां पे जो है बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं रोड के किनारे होने के कारण यहां पे--

जिसको फोटो खिंचवाने के शौक हैं दो चट्टानों के बीच में एक गुफा बनी हुई है।

जो की रेलवे ट्रैक है और काफी लंबी रेलवे ट्रैक है नदी भी काफी चौड़ी लग रही है।

यह मुझे एक ब्रिज दिखाई दे रही है जहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं।

यहां पे मुझे जो मजदूर हैं वो टोटल तीन ही दिखाई मुझे दे रहे हैं और मुझे कई मजदूर दिखाई नहीं दे रहे हैं।

क्युंकी यहाँ पर मुझे खिलौने वगैरा दे रहे--

यहां पे लोग अह आना जाना भी कर रहे हैं।

यह मुझे सुबह का समय लग रहा है।

मुझे बड़े बड़े पेड़ और आसमान में एकदम प्यारा सा मौसम भी दिखाई दे रहा है। पेड़ बहोत हरे भरे हैं।

चित्रण किया गया है जो कि बहुत प्यारी लग रही है।

यहां पर मुझे पौधे भी दिखाई दे रे है उस चित्रण में बहोत ही अच्छी लग रही है मुझे ये पौधे--

क्योंकि सभी तरफ लाइट चली हुई है।

क्योंकि ना यहां पर कोई लाइट जर री है और नह यहां पर कोई बल्ब लगी हुई है स सभी तरफ मुझे अंजोरा--